जहां पर सामने एक आदमी बैठा हुआ है।

जहां पर कुछ सजावट की गई है।

और जहां कुछ लोग है आस पास कुछ पेड़ लगे लगे है।

जहां पर कुछ चटाइयां लगाई गई है।

जहां पर एक गाड़ी खड़ी है।

यहां पर एक नहर है और जहां पर--

जहां पर एक किताबों की दुकान है।

कपड़ों की दुकान हैं और जहां पर--